एक बोन लोहे की बॉउंड्री वॉल नजर आ रही हे बोहोत सारे--

एक शेड नजर आ रहा है.

पेड़ में व्हाइट पेंट किया हुआ है.

सामने एक आदमी नजर आ रहा है.

एक लैनबॉर्ड नजर आ रहा है.

एक कैंची नजर आ रहा हे.

यहां मेन गेट नजर आ रहा है.

एक टेबल नजर आ रहा है.

दो कुर्सी नजर आ रहा है.

सात खिड़की नजर आ रहे हैं.

एक पानी की बोतल नजर आ रही है दीवाल में कुछ पेंटिंग नजर आ रहे है.

बहोत सारे टेबल नजर आ रहे हे.

एक टेबल नजर आ रहा है.

एक सीडी नजर आ रहा हे.

बहुत सारे लाइट नजर आ रही है.